ये कृष्णा दूध डैरी है। वहाँ पे बोर्ड लागाया है। वहाँ पे दूध कि केतलियाँ दिख रही है। एक डस्टपॅड भी दिख रहा है।

अह पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है ओ मैदान के सामने एक रोड जैसे है वह लोग चलते हुए दिखाई-दिखाई दे रहे है।

ये मंदिर है। मंदिर मे गेट भी है। गेट के पास एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है। पेड़ भी दिखाई दे रहे है। और वहा पे-